ये एक स्टेशन का फोटो है स्टेशन के ऊपर का।

और एक दो बाल है और ट्रेडमिल है।

पिक्चर के पीछे बहोत-बहोत अच्छा आसमान है।

यहां पे टीम टीम बैडमिंटन खेला जा रहा है दो जन ने अपनी टीम में बैडमिंटन लिया दो जन ने सामने वाले के टीम में बैडमिंटन लिया है बीच में नेट लगा है रेड कलर का और वाइट कलर का।